और कुछ पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।

मकान के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है।

हमें एक रूम दिखाई दे रहा है।

पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां पार्क की हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ट्रक के ऊपर एल ॲण्ड टी हायड्रोकार्बन अनर्जींग लिखा हुआ हैं।

यह तस्वीर में हमें चार पांच कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में हमें दो फौजी दिखाई दे रहे हैं।

जो साइड में हमें बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।